libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न विषय सीखेंगे:
पहले indexes के बारे में सीखते हैं
index क्या है
index database table में records को खोजने और क्रमबद्ध करने के लिए एक तेज़ तरीका है
हम table में एक field या कई fields को चुन सकते हैं जिसमें records के क्रमबद्ध की आवश्यकता है
index चुनित field या fields पर आधारित records के location स्थान को संचित करता है
अतः data पाने के लिए base index का इस्तेमाल करते हुए सीधा data के location पर जा सकता है
अतः data खोजने के लिए सारे records के scanning की अपेक्षा यह काफी तेज़ है
table की primary की स्वतः ही indexed क्रमबद्ध हो जाती है
अब अपने उदाहरण library database में एक index बनाते हैं
हम books table में title column पर एक index बनाएँगे जो book titles पर खोज को बढ़ाएगा
पहले अपना library database खोलते हैं यदि पहले से नहीं खुला है
और edit mode में books table को खोलें
table डिजाइन window में tools menu पर जाएँ और index design चुनें
indexes window में ध्यान दें कि base ने पहले से ही primary की को unique index के रूप में ले लिया है
अपनी index बनाने के लिए सबसे बायीं तरफ के icon new index पर click करें
और दायीं तरफ index field में drop down सूची में title चुनें
हम यहाँ ascending या descending क्रम भी चुन सकते हैं
और बायीं ओर पर तीसरे icon पर क्लिक करके इस index को फिर से idx _ title नाम दें और इसके बगल में save icon का इस्तेमाल करके इसे सेव करें
अतः यहाँ title field पर हमारा index है
इस प्रकार से हम base का उपयोग करके tables के लिए indexes को बना बदल फिर से नाम देना या मिटा सकते हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है:
membeers table में names पर एक index बनाइए और इसको idx _ membername names दें
आगे देखते हैं कि table filter क्या है
table filter feature हमें अन्य एप्लीकेशन से tables को base database में छुपाने की अनुमति देता है
उदाहरण के लिए library database में books table को छोड़कर सभी tables को छुपा देते हैं
अब table filter table filter tools menu में उपलब्ध है
यहाँ all views को check करें और books table को check करें
मतलब हम केवल books table को अन्य applications को दर्शाने के लिए बना रहे हैं
अब ok button पर click करें
फिर view menu पर click करें और फिर refresh tables पर
ध्यान दें कि केवल books table यहाँ दिख रही है
साथ ही जब इस database को libreoffice writer या calc से एक्सेस करते हैं हम वहाँ केवल books table देखते हैं
यहाँ एक और नियत कार्य है:
1 libreoffice writer खोलें library database को access करें और वहाँ पर मौजूद tables को जाँचें
2 base में सभी tables को फिर से दर्शाइए
3 और tables की मौजूदगी को पुनः check करने के लिए libreoffice writer को फिर से खोलें
अंतत sql command window के बारे में सीखते हैं
sql command window को tools menu से sql चुनकर accessed कर सकते हैं
हम database को sql statements देने के लिए इस window का इस्तेमाल कर सकते हैं
अब हम sql queries को निष्पादित करने के लिए queries का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किन्तु यहाँ हम database से केवल data पूछने तक सीमित हैं
मतलब यहाँ हम केवल select statements जारी कर सकते हैं
किन्तु हम sql statements निष्पादित नहीं कर सकते जो यहाँ data और table की संरचना को बदलते या नये tables बनाते हैं
और sql command window हमें इस तरह के data मैनिप्युलेशन और data definition statements या language का इस्तेमाल करने में मदद करता है
data मेनिप्युलेशन language या केवल dml के उदाहरण हैं:
insert update और delete data
और data definition language या केवल ddl के कुछ उदाहरण हैं:
create table drop table और alter statements
हम पहले dml उदाहरण देखेंगे
base window में tools menu से sql command window खोलें
command to execute text क्षेत्र में टाइप करके books table में नया record जोड़ें:
insert into books title author publishyear publisher price
execute button पर क्लिक करने से पहले command को अब ध्यान से देखें
insert statement table का name और field name और फिर values को सूचीबद्ध करता है जिनको नये record में जाने की आवश्यकता है
ध्यान दें कि table का name और field के name दोहरे उद्धरण चिह्नों में बंद हैं
names जानते हैं कि base case sensitive होता है और दोहरे उद्धरणचिह्न सुनिश्चित करते हैं कि base नामों को स्वीकारे जैसे हमने बनाया था
यदि names उद्धरणचिह्न इस्तेमाल न करें base स्वतः ही सारे नामों को बड़े अक्षरों में बदल देगा
हमें data type text की values को एकल उद्धरणचिह्नों में रखना होगी
numeric fields को किसी भी उद्धरणचिह्नों में रखने की आवश्यकता नहीं होती
साथ ही हमें bookid field सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है जोकि एक autonumber field है
number को खुद से बनाने की ज़िम्मेदारी base लेगा
अतः चलिए sql का निष्पादन करें सूचना command successfully executed पर ध्यान दें
यदि यहाँ हमारे लिखे गये sql में कोई errors होती हैं तो base उन्हें इंगित करेगा
books table पर double click करें और नये record को देखें जिसे अभी जोड़ा है
यह अंतिम row में जुड़ गया है
आगे एक ddl उदाहरण देखते हैं
हम fields authorid author और country के साथ authors नामक नया table बनाएँगे
sql command window में जैसा screen पर दिख रहा है वैसा type करें
और इसे निष्पादित execute करें
tables सूची पर वापस जाएँ और view menu से tables को refresh करें
यहाँ नया authors table है जिसे हमने अभी बनाया है
dml के बारे में अधिक जानने के लिए screen पर दिख रही website पर जाएँ
ddl के बारे में अधिक जानने के लिए screen पर दिख रही wikipedia website पर जाएँ
यहाँ आपके लिए एक और नियत कार्य है:
1 bookid के साथ book कीमत 3 से rs 300 तक निर्धारित करने के लिए update statement का इस्तेमाल करें
2 the hobbit शीर्षक नामक book को डिलीट करें
3 authors table में नया record लेखक का name j r r tolkien और देश england जोड़ें
4 drop statement इस्तेमाल करके database से authors table को drop करें
इसी के साथ हम libreoffice base के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने निम्न विषय सीखें: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
यह project